कपड़े का दुकान है ये कुछ मॉल जैसा लगरा--

उसके सामने से एक भाई साइकिल में से जा रहा है।

बहुत अच्छा है देखने में भी बहुत सुंदर है बस--

कुछ जिम जैसा दिख रहा है यहाँ पे वर्कआउट के लिए जो आदमी लोग आते हैं ना ऐसा दिख रहा है यहाँ पे बहुत काफी--

और देखने में बहुत सुंदर है क्लीन है साफ दिख रहा है।

और देखने में तो बहुत अच्छा है वर्कआउट का जिम --

तो इलेक्ट्रिशियन का जो भी काम होता है ना वहाँ हाँ ऐसे ही कुछ दिख रहा है।

बाहर कुछ पानी है बारिश हुआ होगा इसीलिए --

एक बहुत बढ़िया रोड है काफी सारा दुकान है ।

कुछ बैग है कबोर्ड है स्टूल्स है।

आ अ अ क्या बोलते हैं मछली को पकड़ने के लिए जाते हैं ना वैसा को है ।